यह एक हॉल है जिसमें ए के फिटनेस जिम --

यहां पर पीछे बहुत सारे स्पीकर भी लगे हुए हैं।

जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा लाल रंग से लिखा गया है।

लड़का कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है इसका दरवाजा पीले रंग--

जो ब्लैक कलर की है इसके दाईं ओर एक सिल्वर गाड़ी भी खड़ी है।

कृष्णा बॉक्सिंग के लिखा हुआ है।

सामने बहुत बड़ा एक गेट है।

और उसके अंदर दु खिड़किया दिख रही है।

लर्न ग्रेजुएशन लिखा हुआ गया है।

एक हैंडलूम का दुकान मालूम पड़ती है।

जो कि एक ब्राउन और एक स्काई कलर का है।

सामने यह पीच कलर का है यह पत्थर का है।

और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे खाने की सब्जियां --

एक आदमी अपना कुछ काम कर रहा है।

नीले रंग की रेलिंग बनाई गई है।

यह एक मार्केट का सीन है जिसमें सामने एक गाड़ी खड़ी है।

जिस पर परफेक्ट डेंटल क्लीनिक लिखा हुआ है।

और उसके आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं।

पेड़ों की बड़ी सुंदर सी कटिंग की गई है।

यह चित्र प्रकृति का है इसमें --

उनके नीचे एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

साथ में एक स्पीकर भी लगा हुआ है।

और दोने हाथ में बैलून के लिए हुए हैं।

और यहां पर कोई समारोह की तैयारी चल रही है।

इसमें घी के डिब्बे पड़े हुए हैं जो कि अमूल के हैं।

उधर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

इन गमलों में पौधे भी लगे हुए हैं।

और फूल गुलाबी नीले रंग के हैं साथ में एक रेलिंग लगी हुई है।

यह एक सूटों की दुकान है बाहर पीले रंग का गुलाबी रंग का लाल रंग का और मैरून रंग का सूट टांगा गया है।

अंद बाहर एक बाइक खड़ी है और कुछ बैग में भी सूट रखे हुए हैं।